एक दुकान हैजो की कॉपी -किताब की दुकान है। उसके बाहर एक गाड़ी खड़ी है जो की सफ़ेद रंग की है।

मैदान पे एक आदमी है जोकि कुछ मोबाइल देख रहा है।

एक प्लेटफार्म है। जिनमे टाइल्स लगी हुई है उसके बगल में एक ट्रेन खड़ी है ट्रेन के सामने दो आईने लगे हुए है।

उसके पीछे बोहत सारे गमले रखे हैं जोकि फूल के हैं और कुछ पौधे के हैं।

जिसमें लाइट लगी हुई है जो कि संतरे कलर की है और सफ़ेद कलर की है। चारों तरफ कुछ गाड़ियाँ दिख रही हैं और कुछ घर दिख रहे हैं और कुछ पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

एक रेलवे स्टेशन है जिसमे एक प्लेटफार्म है जिसमे काले कलर की टाइल्स लगी हुई है और बैठन वाली स्टील की चेयर बनी हुई है।

चारो तरफ ट्रक खड़ी है जो की काफी बड़ी बड़ी हैं और चारो तरफ पेड़ पौधे दिख रहे है जो के हरे भरे हैं।